साथ ही एक व्यक्ति अपनी फोटो लेते हुए दिखाई दे रही है ।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

साथ ही एक वाहन में दो लड़के जा रहे है और दो पैदल जा रहे है ।

उसमें लिखा है क्लास एट टू टेन सी.बी.एस.इ. --

इस चित्र में हमें एक वाहन दिखाया गया है जिसका एक पहिया दिखाया गया है।

जहाँ एक के हाथ में कैंची और सेलो टेप दिखाया गया है ।

जिसमें एक अस्पताल है और एक होंडा शोरूम है।